ये ऐ_सी लगी हुई दिख रही है तथा एक बेड पड़ा हुआ दिख रहा है।

तथा गणेश जी की मूर्ति बनी हुई दिख रही है।

बहोत से बिस्किट्स और मसाले टंगे हुए दिख रहे हैं।

इस इमेज में एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है।

इस इमेज में पानी बहता हुआ दिख रहा है चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

बैलूनों का कलर लाल बा सफेद दिख रहा है और कुछ शूट बा शर्टें टंगी हुईं दिख रही हैं।

टेबलों के ऊपर एक कैंची व एक कॉपी रखी हुई दिख रही है और एक बॉक्स रखा हुआ दिख रहा है।

यह दृश्य एक शादी का लग रहा है जहां बोहोत सी कुर्सियां व टेबले पड़ी हुई दिख रही है। कुर्सियों पर काले व सफेद रंग के पर्दे पड़े हुए दिख रहे हैं और लाइटें लगी हुई दिख रही है।

एक व्यक्ति पीले रंग की शर्ट पहने हुए बैठा है और कुछ व्यक्ति फोन पर बात कर रहे हैं।

इस इमेज में एक थ्रेसर खड़ा हुआ दिख रहा है जो पीले वह हरे रंग का है उसके टायर ब्लैक लग रहे हैं।

इस इमेज में एक व्यक्ति चैनल खोल रहा है। चैनल का कलर काला दिख रहा है पास में कुर्सी पड़ी हुई दिख रही है।

यह दृश्य एक कॉलेज का या स्कूल का लग रहा है।

ये दृश्य एक जागरण का लग रहा है यहां बहुत से व्यक्ति खड़े हुए दिख रहे हैं।